आसपास बहुत सारे घर दुकानें भी दिखाई दे रही हैं।

सामने एक पेट्रोल पंप है।

बस ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा दिख रहा है जिसमें छत दिखाई दे रही है।

बाहर की तरफ ऑरेंज सफेद हरे कलर के गुब्बारे लटके हैं।

नीचे वॉटर कूलर साइड में दोनों तरफ डस्टबीन भी रखा है।

इसमें पूरे स्विमिंग पूल में पानी पानी भरा हुआ है।

अलमारी में बहुत सारे प्लेट्स कटोरें हैं।

उसमें बहोत सारी मोटी पतली किताबें रखी दिखाई दे रही हैं।

सामने एक काउंटर बड़ा सा है।

साइड में एक शीशा है जिस पर नो मास्क नो एंट्री लिखा है।

लोहे के खंभे दरवाजा बना है।

बहोत सारी किराने की दुकाने भी हैं।

लाइट के खंभे लगे हुए दिख रहे हैं।

ये एक बहुत बड़ी सी नदी है।

इसका पानी नीले कलर का दिखाई दे रहा है।

इन्होंने हाथ में नाव चलाने वाला डंडा पकड़ा हुआ है।

ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें सोफे बेंच रखे दिखाई दे रही हैं।

देखिए अंदर से भी पेड़ घास उगी दिखाई दे रही हैं।

एक पीले कलर की गठरी रखी है।

सामने एलमारियों पर बॉटल चॉकलेट के डिब्बे बॉक्स पैकेट खाने पीने के डब्बे रखे दिखाई दे रहे हैं।

सामने काउंटर पर एक आदमी खड़े हैं एक पीछे आदमी बैठा है।

अंदर फ्रिज रखे हैं। दो इलमारिया भी बनी हैं।

बाहर की तरफ लाइन से फ्रिज रखी है।

सामने इसमें लाइन से तीन हैंगर है।

समने एक औरत ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं।

साइड में डब्बे रखे दिखाई दे रहे हैं काफी के।

सामने दुकान है। दुकान पे बर्गन किंग का बोर्ड लगा है।